इसमें एक बहुत बड़ा पैसेज दिखाई दे रहा है पैसेज के ऊपर एक ऐलबैस्टर का शेड बना हुआ दिख रहा है इसमें बहुत सारे पोल लगे हुए हैं इस से शेड के अंदर एक फोर व्हीलर खड़ा है एक जनरेटर लगा हुआ है।

यहां एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड में बहुत बड़े बड़े टंकी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जो स्टील से बने हुए हैं बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं बहुत--